बुनियादी अरिथ्मेटिक ऑपरेटर्स पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
मैं पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाय और डिवाइड ऑपरेशन्स के बारे में बताऊँगा
यह ऐसे लिखे जाते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक एस्टेरिस्क के रूप में और डिवाइड फॉर्वर्ड स्लैश के रूप में
तो मेरे पास दो वेरिएबल्स होंगे
मैं एक नुम1 नामित वेरिएबल बनाऊँगा और मैं उसे 10 वेल्यू देकर सेव करूँगा और नुम2 इक्वल टू 2
अतः ये दोनों पूर्णांक संख्याएँ बिना दशमलव की हैं
अच्छा अब मान लीजिये कि मैं नुम1 और नुम2 को एक साथ जोड़ना चाहता हूँ
तो मैं नुम1 नुम2 के जोड़ का उत्तर एको करता हूँ
चलिए इसको जाँचें
तो यह 12 है
10 और 2 नुम1 और नुम2 जब 10 और 2 को जोड़ते हैं तो उत्तर 12 होता है
अच्छा तो चलिए अब माइनस घटाव को देखें
हम यहाँ केवल माइनस चिह्न को बदल देते हैं
रिफ्रेश करें और यह 8 होगा
अच्छा तो चलिए अब मल्टीप्लिकेशन गुणा को देखें
10 गुणा 2 20 होता है और हमें 20 मिल गया
अगला 10 भाग 2 10 का आधा होता है जो कि 5 है
अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके अंत में कुछ जोड़ दें
तो चलिए इसको नुम2 से भाग देते हैं
अब मुझे लगता है कि यह ऑपरेशन काम करेगा कि यह नुम1 और नुम2 को जोड़ेगा तो वह 10 और 2 को जोड़ता है जो हमें 12 देगा और फ़िर 2 से 12 विभाजित होगा
अतः 2 से 12 विभाजित 6 देना चाहिए
लेकिन वास्तव में यह क्या करेगा यह नुम2 को लेगा और इसको नुम2 से भाग देगा जो 1 देगा और नुम1 को इसमें जोड़ देगा
तो इसका मतलब है कि हमें 6 के स्थान पर 11 मिलेगा
अब इसका कारण यह है कि डिविजन भाग ऑपरेटर हमेशा एडीशन ऑपरेटर से पहले काम करता है
गुणा के साथ भी वही होता है
अब इसको हल करने के लिए हमें कोष्ठक लगाने चाहिए
कोष्ठक यह बताते हैं कि हम इस ऑपरेशन को पहले करेंगे जो कुछ भी इसके अन्दर है उसे पहले करेंगे और फ़िर भाग देंगे यह एक गुणांक या वेरिएबल कुछ भी हो सकता है
तो यहाँ पर यह क्या करेगा कि नुम1 नुम2 को जोड़ेगा जो कि 10 धन 2 जो कि हमें 12 देगा 12 भाग 2 जो कि हमें 6 देगा
चलिए उसे रिफ्रेश करें और हम देख सकते हैं कि यह चला है
तो ये बुनियादी अरिथ्मेटिक ऑपरेटर्स हैं जो उपयोग करने के लिए सरल हैं
यदि आपको कोई समस्या आए तो अपने हिसाब को हमेशा कैलकुलेटर से जाँच लें और निश्चित कर लें कि वे काम कर रहे हैं
हम शीघ्र ही इसी प्रकार के कुछ और देखेंगे
हम इन्क्रीमेंट वृद्धिअरिथ्मेटिक ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे जो कि 1 से वृद्धि करता है लेकिन मैं उसका प्रयोग कुछ देर बाद करूँगा
अतः इनका अभ्यास कीजिये और निश्चित कर लीजिये कि आप उन्हें अच्छे से सीख लें
आई आई टी बाम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद